-- हो चुकी है येलो कलर के कारण मिक्स हो गई है समझ मे आ रही है क्यू ये थोड़ी सुख चुकी है इसको इमे लिए केरेट के ऊपर रखा उसके ऊपर पॉलिथीन बिछा के रखा गया है ताकि उठाने मे काफी सुविधा हो ओर यहाँ पे काफी मात्रा मे--

खूबसूरती से टिकिटस का जो है वो लिखी हुई है टिकिट जो लिखी हुई है टी जो है वो येलो कलर की है और आई जो लिखा हुआ है वो व्हाइट कलर का लिखा हुआ है।

कलर की एक बड़ी सी बस नजर आ रही है जिसके सामने का जो कांच है वो ब्लैक कलर के नजर आ रही है उसके सामने एक संतरे कलर का बस है और सामने एक व्हाईट --